इस दृश्य में कपड़े शॉप की तस्वीर दिखाई दे रही है।

स्विमिंग पुल में एक मशीन लगी हुई है।

बड़े पो पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पे फ्रिज रखा हुआ है फ्रिज में ढेर सारे रंग बिरंग के केक रखे हुए है आइसक्रीम रखी हुई नजर आ रही--

खिड़कियां दिख रही है सीलिंग पे फैन लगी हुई है।

इस मग में कॉफी हैं।

गेट पे शीशे लगे हुए हैं दरवाजे के--

बहोत सारे बाइक पार्क किए हुए हैं।

जमीन पे बहुत से नट बोल्ट रखे हुए हैं।

इसकी सीलिंग पे इंटीरियर डिजाइनिंग की हुई है।

एक डीप फ्रीजर रखी हुई है पेप्सी की एक डीप फ्रीजर वोल्टास की --

जहां पे बहुत सारे स्लाइड्स बने हुए हैं।

पानी में कुछ लोग नहाते हुए नजर आ रहे हैं।

जहां प एक शोकेस बना कर उसमें बहुत अलग अलग तरह के केक रखे हुए हैं।

एक व्यक्ति नजर आ रहा है।

दो टेबल फैन लगी हुई हैं एक स्क्रीन दिख रही हैं।

बहोत सारे मैट बिछे हुए हैं।

जो की मारुति सुजुकी की है जहां पे एक बैनर लगा हुआ है।

बहुत सारी मिरर दिख रही है एक फैन लगी हुई है।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

जैसे फेवीक्विक के पैकेट टंगे हुए हैं।

इस चित्र में एक गार्डेन एरिया दिखाया गया है।

पे तार लप लपेटे हुए है।

इस बिल्डिंग के बाहर नर्सिंग कौशल कॉलेज लिखी हुई है।

बहुत सारे पौधे पेड़ दिख रहे हैं।

जैसे रेड पिंक वाइट ग्रीन येलो ब्लैक --

जहां पे बीच में बैठने के लिए चारपाई और चेयर लगे हुए हैं।

इस चित्र में एक कैम्पस एरिया दिखाई दे रहा है।

जहां पे बेंच रखे हुए हैं उन बेंच के ऊपर बहुत सारे सामान रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।